यहाँ नीला और ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है |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

ब्लू कलर की जीन्स पेहने हुए दिखाई दे रहा है और पास में कुछ और नाव भी पड़े दिखाई दे रही है कुछ बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

एक बड़ी-सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है | बिल्डिंग के सामने एक सड़क दिखाई दे रही है | बाउंड्री खींची दिखाई दे रही है बाउंड्री पर काफी सारे सफ़ेद कलर की लाइटे लगी दिख --

पर रिबनो से सजावट होती दिखाई दे रही --

सारे अलग-अलग प्रकाश की पेने रखी हुई दिखाई दे रही है एक लड़का पेन बताते हुए दिखाई दे रहा है जिसमे बालकनी लगी हुई दिखाई दे रही है बालकनी पे काफी सारी बूके --

सामने काफी सारी बाइके खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है रोड दिखाई दे रहा है रोड पर एक आदमी --